एक के पास ब्लैक जिन्स एक के पास ब्लू जीन्स और वह लोग पानी मैं खड़े हैं| और पीछे एक नौका चलाने वाला एक आदमी हैं | पीछे आसमान भी नीला हैं | पानी भी नीला हैं और काला हैं।

जो येलो शर्ट मैं हैं और एक पिंक कलर का आदमी हैं जो खून से लाल हो गया हैं और मछली छिलता ही जा रहा हैं कुछ कटोरी हैं दीवाल है जमीन पे बैठे के ये लोग छील रहे हैं।

और यह शायद किसी होटल एक सलून में आया हुआ है बाल कटवाने बाल कटवा के फोटो खिचवा रहा है टाई पहना हुआ है रेड कलर का स्वेटर पहना हुआ है।

ऑरेंज है किसी मॉल का फोटो है जहाँ एक आदमी खड़ा होके फोटो खींच रहा है यहाँ रेड कलर का बैग टांगा हुआ है येल्लो का टी-शर्ट पहना हुआ है।